नमस्कार दोस्तों फाइल्स के साथ शुरूआत पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आप निम्न करने में सक्षम होंगे एक फ़ाइल खोलने में
फाइल के कंटेंट्स को लाइन दर लाइन पढने में
फाइल के पूरे कंटेंट को एक बार में पढने में
एक लिस्ट में फ़ाइल की लाइन्स को जोड़ने में
फाइल बंद करने में
इस ट्यूटोरियल को शुरु करने से पहले हम आपको गेटिंग स्टार्टेड विथ लिस्ट्स और गेटिंग स्टार्टेड विथ फोर पर स्पोकन ट्यूटोरियल को समाप्त करने की सलाह देते हैं
अतः अब टर्मिनल खोलें और आईपाइथन शुरू करें
अतः टाइप करें इपिथॉन स्पेस हाइफेन पाइलैब
सबसे पहले स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश में मौजूद पेंडुलम डॉट टीएक्सटी फाइल खोलें
अतः टाइप करें फ़ इस इक्वल टो ओपन विथिन ब्रैकेट्स एंड सिंगल क्वोट्स स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश पेंडुलम डॉट टीएक्सटी
यहाँ फ़ एक फाइल ऑब्जेक्ट है
इसे देखने के लिए कि यह क्या है टर्मिनल पर फ़ टाइप करते हैं
अतः फ़ टाइप करें और एंटर दबाएँ
फाइल ऑब्जेक्ट फाइल पाथ और खुले हुए फाइल के मोड को दर्शाता है
र का अर्थ है रीड ओनली मोड और द्व का अर्थ है राइट मोड
जैसा कि आप देख सकते हैं यह फाइल रीड ओनली मोड में खुली है
हम पहले पूरी फाइल को एक अकेले वैरिएबल में रीड करना सीखेंगे
हम फाइल के कंटेंट्स को वैरिएबल पेंड के अंदर रीड करने के लिए रीड तरीके का इस्तेमाल करते हैं
अतः टाइप करें पेंड इस इक्वल टो फ़ डॉट रीड क्लोजिंग ब्रैकेट्स और एंटर दबाएँ
अब प्रिंट स्पेस पेंड टाइप करके देखते हैं पेंड में क्या है हम देख सकते हैं कि पेंड में फाइल का सभी डेटा है
स्पष्टतः से देखने के लिए कि उसमें क्या है केवल पेंड टाइप करें
अतः अब यहाँ विडियो रोकें निम्न अभ्यास करें और विडियो पुनः चलायें
फाइल में लाइन्स पर वैरिएबल को लिस्ट पेंड अंडरस्कोर लिस्ट में तोड़ें
हम इस समस्या को हल करने के लिए फंक्शन स्प्लिट लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं
अतः टाइप करें पेंड अंडरस्कोर लिस्ट इस इक्वल टो पेंड डॉट स्प्लिट लाइन्स क्लोजिंग ब्रैकेट्स और एंटर दबाएँ
अब फाइल को लाइन दर लाइन रीड करना सीखते हैं
लेकिन इससे पहले हमें फाइल बंद करनी होगी क्योंकि फाइल पहले से ही अंत तक रीड हो चुकी है
फ़ में खुली हुई फाइल को बंद करें
फिर टाइप करें फ़ डॉट क्लोज क्लोजिंग ब्रैकेट्स और एंटर दबाएँ
यह देखने के लिए कि इसमें क्या है
फिर से प्रॉम्प्ट पर फ़ टाइप करें
ध्यान दें कि यह दर्शाता है कि फाइल बंद हो चुकी है
यह एक अच्छा प्रोग्रामिंग अभ्यास है कि काम पूर्ण होने के बाद कोई भी फाइल ऑब्जेक्ट्स जिसे हमने खोला है उसे बंद करें
अब फाइल्स को लाइन दर लाइन पढना सीखते हैं
यहाँ पर विडियो रोकें निम्न अभ्यास की कोशिश करें और विडियो पुनः चलायें
फाइल ऑब्जेक्ट के रूप में फ़ के साथ फाइल पेंडुलम डॉट टीएक्सटी फिर से खोलें
हम अप एरो इस्तेमाल करते हैं जब तक हम ओपन कमांड तक न पहुँच जाएँ और इसे फिर से जारी करें
फिर एंटर दबाएँ
अब फाइल को लाइन दर लाइन रीड करने के लिए फोर कमांड का इस्तेमाल करके फाइल ऑब्जेक्ट पर लाइन दर लाइन दोहराते हैं
फाइल में प्रत्येक लाइन दोहराते हैं और प्रत्येक लाइन को प्रिंट करते हैं
अतः कमांड में टाइप करें फोर स्पेस लाइन स्पेस इन स्पेस फ़ कोलोन फिर प्रिंट लाइन
लाइन एक वैरिएबल है कभी कभी लूप वैरिएबल बोलते हैं और यह एक कीवर्ड नहीं है
हम कोई और वैरिएबल नाम इस्तेमाल कर सकते थे किन्तु लाइन काफी अर्थपूर्ण दिखता है
केवल लाइन को प्रिंट करने के बजाय इसे लिस्ट लाइन अंडरस्कोर लिस्ट में आगे जोड़ते हैं
हम पहले एक खाली लिस्ट लाइन अंडरस्कोर लिस्ट बनायेंगे
इसके लिए टाइप करें लाइन अंडरस्कोर लिस्ट इस इक्वल टो स्क्वेयर ब्रैकेट और एंटर दबाएँ
फाइल को लाइन दर लाइन पढ़ते हैं और फिर प्रत्येक लाइन को लिस्ट में जोड़ते हैं
हम फाइल को सामान्यतः fक्लोज का इस्तेमाल करके बंद कर सकते हैं और इसे फिर से खोल सकते हैं
किन्तु इस बार फाइल ऑब्जेक्ट फ़ को फॉर स्टेटमेंट के अंदर अकेला छोड़ देते हैं
हर बार जब हम फाइल खोलेंगे को यह हमें इसे बंद करने की तकलीफ से बचाएगा
अतः टाइप करें फोर लाइन इन ओपन विथिन ब्रैकेट्स एंड सिंगल क्वोट्स स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश पेंडुलम डॉट टीएक्सटी कोलोन लाइन अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड विथिन ब्रैकेट्स लाइन एंटर दबाएँ
देखते हैं कि लाइन अंडरस्कोर लिस्ट में क्या है
अतः टाइप करें लाइन अंडरस्कोर लिस्ट और एंटर दबाएँ
ध्यान दें कि line list न्यू लाइन कैरेक्टर्स के साथ फाइल की लाइन की सूची है
क्या आपने ध्यान दिया है पेंड अंडरस्कोर लिस्ट न्यूलाइन कैरेक्टर्स को सम्मिलित नहीं करता है क्योंकि स्ट्रिंग पेंड न्यू लाइन कैरेक्टर्स पर विभाजित है
हम कुछ स्ट्रिंग तरीकों जिसे हम स्ट्रिंग पर आगे ट्यूटोरियल में देखेंगे का इस्तेमाल करके लाइन से न्यू लाइन कैरेक्टर्स अलग कर सकते हैं
अतः अब इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गये हैं
जो हमने सीखा उसे दोहराते हैं 1
फाइल्स को ओपन और क्लोज फंक्शन्स का इस्तेमाल करके क्रमशः खोला और बंद किया
रीड फंक्शन का इस्तेमाल करके फाइल्स में डेटा को सम्पूर्ण करके रीड किया
फोर लूप का इस्तेमाल करके फाइल ऑब्जेक्ट दोहराकर फाइल्स से डेटा को लाइन दर लाइन रीड किया
और अंततः फॉर लूप के अंदर अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके लिस्ट में एक फाइल की लाइन को जोड़ा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
1ओपन फंक्शन देता है एक स्ट्रिंग लिस्ट फाइल ऑब्जेक्ट फंक्शन 2फंक्शन splitlines क्या करता है
सभी डेटा को एक लाइन में स्ट्रिंग्स के रूप में दर्शाता है
डेटा को लाइन दर लाइन स्ट्रिंग्स की तरह दर्शाता है
डेटा को लाइन दर लाइन दर्शाता है लेकिन स्ट्रिंग्स की तरह नहीं
अतः अब उत्तरों को देखते हैं 1फंक्शन ओपन एक फाइल ऑब्जेक्ट देता है
2फंक्शन स्प्लिटलाइन्स डेटा को स्ट्रिंग की तरह लाइन दर लाइन दर्शाता है